पंखे भी लगे हुए हैं लाइटे लगी हुई है और पंखों का कलर लाल--

और दो चा चार्ट पेपर भी है उनके पास।

यहां मेरे सामने बहुत बड़ा घर बना हुआ है और बहुत सारे भी घर बने हुए है और यहां बाउंड्री बनी हुई है बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।

यहां पर बड़ी सी दुकान खुली हुई है जहां की बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

और सब के पास चार्ट पेपर है खिड़कियां भी लगी हुई है और बोले तो जमी हुई है।

लगा हुआ है बहुत सारे पेड़ भी है यहां पर लोग भी है गाड़ियों कलर का--